जिसमे हमें कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं जिनका हंग रंग हरा हैं।

इस पिक्चर में हमें ए.के फिटनेस --

जो पुराने टाइम के पथरों से बना होता है।

एक मार्किट दिखाई दे रही है।